इस फोटो में ट्रेन जाती हुए दिख रही है एवं उसके ऊपर इंडिया रेलवे लिख रहा है।

तथा वही पर कुछ ब्रेंचे पड़ी हुए है एवं वहा पर बहोत सारी घास दिख रही है और एक खम्भा खड़ा हुआ दिख रह है।

इस फोटो में बहोत सारे आदमी दिख रहे हैं। एक आदमी ने काले रंग का थैला लटका रखा है।

तथा गाडी के बराबर में बहुत सारे पेड़ दिख रहे है एवं बाई तरफ भी पेड़ दिख रहे है।

इस फोटो में साड़ी खुली हुई दिख रही है।

इस फोटो में एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है तथा वह पत्थरों के ऊपर खड़ा हुआ है। उस लड़के ने काले रंग की पैन्ट तथा ऊपर रंग-बिरंगी टी-शर्ट पहन रखी है वह उन पत्थरों को छूने की कोशिश कर रहा हैं।